एक तस्वीर लगी हुई दिखाई दे रही है।

और दरवाजा दिखाई दे रहा है।

नदी के किनारे पर बिल्डिंग्स बनी दिखाई दे रही है पेड़ दिखाई दे रहे है।

इस इमेज में मुझे एक भारतीय स्टेट बैंक दिखाई दे रही है जिसके सामने एक बड़ा सा पोस्टर लगा हुआ है।

इस पिक्चर में मुझे एक मंदिर दिखाई दे रहा है मंदिर के उ मंदिर के अंदर एक भगवान जी की मूर्ति रखी हुई दिख रही है।

बस का कांच दिखाई दे रहा है।

अ वहाँ पे ट्रेन एक रखी हुई भी दिख रही है जिसमें कुछ लोग --

और एक घर बना हुआ दिखाई दे रहा है एक खंभा दिखाई दे रहा है।

सिगनल दिखाई दे रहे है।

कुछ लोग खड़े हुए दिखाई दे रहे है दूसरी नांव में सिर्फ दो लोग ही दिखाई दे रहे है पंछी उड़ते हुए दिख रहे है।

एक खजूर का पेड़ दिखाई दे रहा है और लाइट के खंभे दिखाई दे रहे है।

इस पिक्चर में मुझे एक फैक्ट्री दिखाई दे रही है और एक लोहे का बड़ा सा खम्भा सा दिखाई दे रहा है उसमे बहोत सारा धुंआ निकल रहा है।

इस पिक्चर में मुझे एक पूल दिखाई दे रहा है पूल के नीचे पानी भरा हुआ है बहोत सारा --

इसके चारो तरफ बड़े - बड़े पेड़ लगे हुए दिख रहे है और एक दरवाजा दिखाई दे रहा है।

और सीमेंट से एक राउंड बना हुआ है।

और उसका दरवाजा दिखाई दे रहा है सीढ़ी दिखाई दे रही है।

गुब्बारों से सजाया गया है।

खिड़की दिखाई दे रही है।

ए _सी लगी हुई दिख रही है।

दोनों साइड लाइट लगी हुई दिख रही है।

बहोत सारी लाइट्स लगी हुई दिखाई दे रही है।

इस पिक्चर में मुझे एक मिट्टी का ग्राउंड वन ग्राउंड दिखा रहा है उसमें बहोत सारी मिट्टी दिख रही है।

दिखाई दे रही है लाइट दिखाई दे रही है।

कलर की बत्तख़ दिखाई दे रही है।

बाउंड्री को पीले कलर से पेंट किया गया है।

इस पिक्चर में मुझे एक मकान दिखाई दे रहा है।

मकान के आगे वाइट कलर की एक कार रखी हुई दिख रही है।

यहाँ पे एक ग्राउंड दिखाई दे रहा है मिट्टी का और सीमेंट के बहोत सारे खंभे लगे हुए दिखाई दे रहे है।